यहां साइकिल भी बिक रही है छोटे बच्चों की और बड़ों की--

यहां बर्फी रसगुल्ले गुलाबजामन --

और कलाकंद खोए की बर्फी और जलेबी और इमरती --

यहां बहोत से आदमी नजर आ रहे हैं जैसे यहां कुछ हो रहा है।

यहां बहोत सुंदर नजारा दिख रहा है और हरियाली सी भी छाई हुई है।

और एक मंदिर सा छोटा सा दिखाई दे रहा है।

और बड़े बड़े पेड़ भी लग रहे हैं।

यहां खाली मैदान भी बहुत पड़ा है और दो तीन गाड़ियां भी खड़ी है।

और छोटे छोटे डब्बे से भी रखे हैं।

ये ये बड़ी दुकान दिखाई।

और बच्चे झूलने आते हैं।

और यहां पर बड़ी बड़ी भी नजर आ रही है।

ये बहोत बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है।

ऑरियल शैंपू और सरसों का तेल--

और बहोत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है।